नीचे एक गेट नजर आ रहा हैं।

कुछ लोग यहां पर कसरच करते हुए--

सामने एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

दो लाइटें भी जलती नजर आ रही है।

इसे इमेज में देखियेगा यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है।